एक एक करके चार-पांच ग्रुप है जो की अच्छे से काम कर रहे हैं टीचर्स भी दो लोग हैं टीचर्स दो हैं।

शानदार अच्छा लग रहा है देखने में दोनों तरफ बाइक्स खड़ी है और फोटो क्लिक --

पीछे ब्लैक एंड व्हाइट बादल हैं जो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसा है अच्छा है पर जैसा भी है बढ़िया है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया शानदार लग रहा है।